इस चित्र में एक लकड़ी का टेबल दिखाई पड़ रहा है जिसके ऊपर पानी की बोतल और कुछ वस्तुएं रखी गई है।

बाहर एक पोल खंभा है लगा हुआ।

सीधे में एक पीले रंग का भी मकान दिख रहा है।

काफी हरा भरा और खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है।

एक व्यक्ति सफेद रंग की टोपी पहने हुए हैं।

सामने दो पिलर बने हुए है जो सफेद रंग के हैं।

इस चित्र में एक साइकिल की दुकान दिख रही है।

यहां दाईं ओर बांई ओर भी काफी नई-नई साइकिले रखी गई है जो रंग-बिरंगी है।

काफी छोटे छोटे पौधे दिखाई पड़ रहे हैं।

सामने बिजली के बड़े बड़े टॉवर्स भी दिखाई पड़ रहे हैं।

एक व्यक्ति दीवार के तरफ खड़ा है जो काले रंग की टी शर्ट को पहना हुआ है।

इस चित्र में एक कार्यालय का दृश्य है जहां कॉरिडोर पे काफी लोग खड़े दिखाई पड़ रहे हैं।

इधर दाहिने तरफ एक महिला एक झोला लेके खड़ी है और एक महिला बैठी हुई है।

एक बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है जिसका पहला तल्ला कांच की खिड़कियों से बना है।